आस पास के चट्टानों पर कुछ पौधे भी उगे हुए हैं।

मार्बल के सैंपल पीस रखे गए है।

गेट पे दिखाई दे रहा है।

यह चित्र एक नाई की दुकान का है।

दुकान में फ्रिज भी रखा हुआ है।

इस चित्र में दो हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे हैं एक--

चित्र में कच्चे केले लटके हुए दिखाई दे रहे हैं।

बना हुआ है यह नीले और सफेद रंग का है।

इस चित्र में एक बड़ी मशीन रखी हुई दिखाई दे रहीं हैं।

मशीन पर अभिनय कृषि उपकरण इकाई लिखा हुआ है।

चम्मच रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ कांटे भी रखे हुए हैं।

जिस पर चार कुशन रखे हैं।

सोलर पैनल दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में कुछ गाड़ियां खड़ी हुई है।

यह चित्र एक गेम जोन का है।

इस चित्र में गेम जोन का नाम फन प्लैक्स --

चित्र में बहुत सारे अध्यापक और अध्यापिका के साथ--

इस चित्र में एक हॉल --

एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ दिख रहा है।

हॉल के अंदर गाड़ी खुली हुई है।

इलेक्ट्रॉनिक समान रखा हुआ दिख रहा है।

कुछ चश्मे भी रखे हुए हैं एक मशीन भी है।

साड़ी पेहनी हुई है बाकी औरतों ने पिच रंग की पेहनी है।

इस चित्र मे एक लंबी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।